लाइट वेगेरा दिख रहे है गेट्स दिख रहे है कंप्यूटर रखा हुआ दिख रहा है कलर्स दिख रहे है।

बैड ऑरेंज गेंज वगेरह दिख--

बौदी राखी हुई दिख रही है चद्दर सेट ग्राउंड दिख रहा है गाड़ी तैयर दिख रहा है एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है वेटकुली दिख रहा है चेयर दिख रही है।

वी दिख रहा है एक जेंट्स खड़ा हुआ दिख रहा है बैठा हुआ दिख रहा है एक चेयर --

मकान दिख रहा हैनीली कलर कि नेट बंधीहुई दिख रही हैपेड़-पौधे दिख रहे है डाली बंधी दिख रही है।

जेन्स दिख रहा है छईया दिख रही है पेड़-पौधे दिख रहे हैं बिजली के तार दिख रहे हैं पेड़ केले मकान दिख रहे है कलर्स दिख रहा है बाहर --

फोटो मढ़ीहि हुई दिख रहे है।